सामने एक टेबल एक चेयर दिख रहे है टेबल के उपर एक घंटी रखी हूई है नीचे पुजा हूई है दो आसान बिछे हुये हैं।

आस-पास हरे-भरे घने बहुत ही घने जंगल दिख रहे हैं।

और आस-पास कोई नहीं है हरा-भरा मैदान दिख रहा है बस।

सामने एक अ दुकान दिख रही है जहां पक्छी-पक्षिया एक बांस के ऊपर अ एक बांस जैसे स्टैंड बनी हुई है उसके ऊपर पाच बड़ी-बड़ी पक्षी रखी हुई है।

ये भी एक पार्लर की तस्वीर है पार्लर के सामने दीवाल में एक बड़ी सी काँच लगी हुई है।

तो एक बेसिन बनी हुई है और दीवाल-दिवाल मे एक शोकेस जैसा बना हुआ है साइड में बहुत सारे शैम्पू रखे हए हैं। एसी दिख रही है सामने।

किताब की दुकान है। अ किताब की दुकान के अंदर बोहोत सारी किताबें रखी हुई हैं।

अ चर्च के चारों तरफ अ ऊंची-ऊंची पहाड़ दिख रही है हरी-भरे पेड़-पौधे दिख रहे हैं ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है।